जहां पर बहुत से टी_वी दिखाई दे रहे--

नीचे रेड मैट दिख रहा है।

है और कुछ कपड़े लटकाए हुए दिखाई दे रहे--

एक दरवाजा दिखाई दे रहा--

है जहां पर बहोत से मुर्गे दिखाई दे रहे--

यह एक सूट की दुकान दिखाई दे रही है यहां बहुत--

है यह एक पेट्रोल पंप दिखाई--

यह एक छत दिखाई--

है और कुछ गमले दिखाई दे रहे हैं जहां पर बहोत से फूल दिखाई --

कुछ पेड़ पोधे दिखाइ दे रहे हैं।

और इनके चेहरे पर ब्लर दिख रहा--

दिखाई दे रहे हैं और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे--

यहाँ एक बहोत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ पोधै दिखाई दे रहे --

यहां एक नेकलस दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ डायमंड के नग दिखाई--

के ऊपर रखा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ कंगन दिख रहे हैं।

यहां एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई--

कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं।

यहां एक रूम दिखाई--

कुछ सोफे दिखाई दे रहे है एक इंसान दिखाई--

और एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है कुछ लोग चलते फिरते दिखाई दे रहे--

और एक आसमान दिखाई दे रहा है।

एक मेला दिखाई दे रहा है एक आसमान दिख रहा--

एक स्टूल दिखाई दे रहा है कुछ फूलों की मालाएं दिख रही है।

यह एक पत्थरों वाला रास्ता दिखाई दे रहा--

है एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

एक टेबल और कुर्सी दिखाई दे रहा है एक लाइट दिखाई दे रही है।

यहां कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें बहुत से बैनर्स दिखाई दे रहे--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

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं एक सन दिखाई दे रहा है।

दो-तीन चेयर दिखाई दे रही है।

दे रही है कुछ पेड़ पौधे--

यह एक रेस्टोरे दिखाई--